और यहाँ पे दो पंखा हैं और यहाँ पे एल.जी. का कुछ बॉक्स टाइप का रखा हुआ है ।

इसमें एक पिंक कलर का झंडा है और एक स्काई ब्लू का झंडा है और यहाँ पे कुछ बोर्ड बोर्ड बोर्ड है और उस पर लिखा हुआ है।

यहाँ पे फंक्शन हो रहा है किसी चीज़ का और यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे बहुत सारे लडकियाँ हैं और लड़के हैं कुछ कुछ इधर बड़े-बड़े आदमी है ।

और ब्लैक कलर का उस पर एक लाइन है और यहाँ पे कुछ काला साटा हुआ है और यहाँ पे ऊपर में टी.वी. का छतरी है।